और भी पेड़ लगे हुए हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है पानी बहता हुआ बहुत अच्छा लग रहा--

ये एक केंद्रीय विद्यालय है जो की काफी बड़ा है केंद्रीय विद्यालय बहोत बड़ा है बाहरत गेट भी बहोत बड़ा बना हुआ है बहोत अच्छा बना हुआ है खूब सुंदर--

और बहोत बड़ा बना हुआ है जो की दो तीन मंजिल का दिखाई दे रहा है।

लोग बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

बाहर सब लोग बैठे और घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

गंगा का पानी बहोत ठंडा होता है गंगा में मान्यता है गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते है।